एण्ड यहा पे लाइटिंग भी लगी है और यहा पे एक रूम है जहा पे लाइटिंग लगी है एण्ड यहा पे कचरा गाड़ी खड़ी है एण्ड यहा पे फायर ब्रीडगेडींग भी लगी है।

एण्ड यहा पे बड़ा वाला भी ट्रक खड़ा है एण्ड छोटी सी साइकिल खड़ी एण्ड बहुत सारे लोग है यहा पे दोपहर टाइम की पिक्चर लग रही है।

ये एक किराना स्टोर है और यहाँ पे मसाला वागेरह एण्ड कैलक्यूलेटर की मशीन भी है और यहाँ पे तोलने वाला भी है एण्ड यहाँ पे धनिया वागेरह बोहोत सारी चीज़े है।

ये एक झूला है यहां पे एक झूला लगा है मिकी माउस वाला एंड यहां पे ए ये सोलह पलखियों का झूला है यहां से पिक ली गई है एंड ये --

एण्ड यहा पे उन्हों ने चेक वाली शर्ट पहनी है एण्ड जीन्स पहन है ब्लू कलर का एण्ड यहा पे पेन पेंसिल एण्ड बुक है एण्ड यहा पे बहुत सारी बुक है एण्ड उन्हों ने एप्पल का मोबाईल रखा है एण्ड ये रेड चैर मे बैठे है।